माउस और कीबोर्ड रखा हुआ है।

जिसका एक का नंबर डी_एल है एक का नंबर --

उसके बराबर में एक फ्रूट की दुकान है।

और काफी सारे हिरण एक साथ खड़े हुए हैं।

केले रखे हुए हैं अनानास रखा हुआ है पपीता रखा हुआ है एक--

और बहुत सारे फल टंग रहे हैं कुछ रखे हुए--

मैगी रखी हुई है काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

संजय वन में आपका स्वागत है।

के बराबर में भी एक बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत बड़ा होटल लग रहा है।

रेड कलर का एक डस्टबीन रखा हुआ है।

और एक खंबा लगा हुआ है वाइट कलर का ऊपर को --

एक गत्ते का थैला रखा हुआ है का --

इसमे एक कमरे में ब्लैक कलर का सोफ़ा डाला हुआ है।

एक नर्सरी का फोटो है जिसमें काफी छोटे-छोटे छोटे-छोटे पौधे रखे हुए हैं।

इनके दोनों के पीछे एक ऑटो है सारथी कंपनी का --

कोई खड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा लेडीस है जैंट्स है इस--

येलो येलो कलर से आर_ऐल_ऐल_ऐस औ--